इस फोटो में बहुत सारे ट्रक है।

और एक गाड़ी का लाइट जल रहा--

दूर मे एक आदमी खड़ा है।

इसके आगे गेंदा फूल का डेकोरेशन किया गया है।

इस फोटो में एक मकान है जिसके आगे एक ठेला वाला है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

रेक में बहोत सारे सामान है।

दीवाल में एक घड़ी टांगा हुआ है।

इस फोटो में एक छोटा सा मंदिर है जिसका लाल कलर का लोहा का दरवाजा लगा हुआ है।

यह एक गेट जैसा बना हुआ है जिसमें लाइट लगा हुआ हैं।

फर्श में कारपेट बिछाया हुआ है।

बाहर में दो कुर्सी लकड़ी का है और पलंग के साइड वाला भी।

एक रोड है जिसमे बहोत सारे गाड़ी एवं आदमी है।

होटल रैनकिनी का बोड लगा हुआ है।

खिड़की है खिड़की में ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है।